ये एक पेट्रोल पम्प है जिसमे का जिसमे काफी सारे गाड़िया गाड़िया इसमें लगी रहती है ये अभी खाली है रात को बंद है।

बिल्डिंग बन रही है उसका बिल्डिंग मटेरियल है कोई घर बन रहा है इसमें सीमेंट ईटे लग रही किसके घर में कुछ बन रहा है।

और दो बतखे है जो काले रंग की वो तैर रही है।

सरफेक्सल है मैगी है।

बस इतना ही है इमरजेंसी लिखा है वाइट कलर की दिवार--

चर्च है ऊपर ऊपर ईसाइयों का जो है --